दो व्यक्ति टेंपो की रिपेयरिंग कर रहे हैं।

बहुत सारी बाईके खड़ी है लीले रंग के थमले मे लगे है।

एक साईंकल है और सफेद रंग में है।

एक बोल पड़ी हुआ है एक रिंग रिंग रखा है शिशा लगा हुआ है।

और सामने एक तालाब है।

सामने भी पेड़ खड़े हुए हैं।

झाड़ियां भी बहुत खूबसूरत लग--

और सफेद टीन की टीन लगी हुई है।

सफेद रंग की कार है।

पीछे एक लाल शटर है।

सामने एक स्टेच्यू खड़ा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे पंडित बैठे हुए हैं।

सामने कुछ ग्रिल लगी हुए हैं पत्थरों की

नीचे कुछ मैट बिछे हुए हैं।

ये एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मेज पे कुछ रखा हुआ है ये एयर कम्फर्ट की लाइब्रेरीयां है।

एक लाइट लगी हुई है सामने।

सजावट हो रखी है बहुत सारी सुंदर सुंदर।

सफेद रंग बराबर में हो रहा है।

और हरी हरी घास है।

और सामने कुछ जालीयां गड़ी हुई हैं लोहे की।

बराबर में दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

एक बोर्ड लगा हुआ है।

और नीचे फर्श हो रहा है पत्थर बिछा हुआ है और सामने पीले रंग का पेंट पड़ा है और पेंटिंग लगी हुई है।

बहुत सारी लकड़ी पड़ी हुई है।

यहां पर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं।

और एक बैग और एक नीली पन्नी और एक विंडो और एक मेन गेट और सजा हुआ है।

और नीचे कुछ रखी हुई हैं।

बहोत सारे खड़े हुए हैं।

इसमें दो विंडो है और पेले रंग का मकान।

इनमें एक गेट है और बराबर में एक सामने तस्वीर लगी हुई है।

यहां पर गुब्बारे लगे हुए हैं।

एक पाइप है ड्रम का।

एक व्यक्ति फोन चला रहा है।

और यहां पर पीछे पानी बरस रहा है और लीले रंग की लाइट लगी हुई --